चाय दिखाई दे रही है मोबाइल का कवर दिखाई दे रहा है।

इसके अंदर बहुत सारी मेजे दिखाई दे रही हैं।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

बहुत सारे रंग बिरंगे बलफ़ दिखाई दे रहे हैं।

गेट दिखाई दे रहा है एक हरी मेट दिखाई दे रही--

बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं पीछे लाइटे दिखाई दे रही है।

एल_इ_डी दिखाई दे रही है बॉक्स के अंदर एक स्टीक दिखाई दे रही है बहुत सारे गत्ते दिखाई दे रहे हैं।

एक लोहे का जीना दिखाई दे रहा है।